मेज और कुर्सियाँ रखी हुई हैं कुछ गुब्बारे लगे हैं लाइटिंग लगी हुई है और काफी स्वच्छ और सुंदर है यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए है।

यह एक खेल का मैदान है जहाँ पर कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं मैदान काफी सुखा हुआ है।

यह चित्र सूर्यास्त के समय का है सूर्य ढल चूका है और चारो तरफ अँधेरा शीघ्रता से बढ़ने--

इस चित्र मे दिखाये जाने वाला दृश्य प्राकृतिक दृश्य है।

इसमे दोनों तरफ कुछ पेड़ लगे है और बीच मे नदी बह रही है।

इस चित्र मे एक जलपानगृह दिखाई दे रहे है जो की रास्ते मे हुआ करता है प्राय होता है जहाँ प्राया है प्रहिगिर नाश्ते और पानी चाय के लिए रुकते है।

ए सुखी हुई पत्तीयां बिखरी हैं तो कही कुछ फूल लगे हुए हैं ऊपर आसमान नीला और काला दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे प्राकृतिक सौदर्य दिखाई दे रहा है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है।

और कई जगह ईंट जमे हुए दिखाई दे रहे हैं जो भट्टे में लगाए जाऐंगे।

इस चित्र मे पहाड़ और हरियाली का मनोरम द्रश्य दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और कुछ कर्मचारी दिखाई दे रहे है जो उसकी जो उसकी जाँच कर रहै हैं यह विमान उढ़ने की तैयारी मे खड़ा हैं।

बीच में नदी भी एक बहती हुई दिखाई दे रही है यह एक प्राकृतिक जगह है जहाँ पे लोग घूमने जाया करते हैं।